सामने एक ले लाल कलर का कैरट है।

एक मरकरी जल रही है।

और एक नदी है जिसमे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है।

और इसमें एक-दो पाइप्स कनेक्ट की हुई हैं।

एक रास्ता है जिसके बीच में एक द्वार बना हुआ हैं।

और गिलास के ऊपर कुछ पोस्टरस लगे हैं।

निचे बहुत सारी चेयरस लगे हैं और रेड कारपेट है।